यह ऑरेंज एंड ब्लू कलर की है और पीछे में ब्लैक कलर का पर्दा भी लगाया गया है।

उपर में कुछ बैलूंस भी लगाए हुए हैं और यहां पे अलग अलग रैंक बनाए गए हैं जिन सब में ढेर सारे कॉपी और बुक रखे गए हैं।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

इन सब के पीछे इन सब की थोड़ी थोड़ी टहनियां भी दिखाई दे रही हैं।

जो है और लकड़ी के बगल में कुछ और भी लकड़ियां है जो साइड में दिखाई दे रही हैं जो थोड़ी काली कलर में भी--

जहां पे एक कुर्सी लगाई गई है।

और ये टर्टल काफी बूढ़ा हो चुका है।

और इसकी परत भी कमजोर हो चुकी है।

इश्के पास में व्हाइट कलर की दीवारें दिखाई दे रही है जिन सब में जीका लिखा हुआ नजर आ रहा है जाइका जे_आई_के_ए ।

और यहां फर्श के पास थोड़ी थोड़ी लाइट भी आती हुई नजर आ रही हैं।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पे नीचे में--

इस तस्वीर में ढेर सारे मैट बिछाए हुए नजर आ रहे हैं और जिन सब पे ढेर सारे बच्चे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे ढेर सारे पेड़ लगाए हुए नजर आ रहे है जो ऊपर में है।

इस तस्वीर में ढेर सारी लड़कियां लोग रेड कलर के कपड़े पहन के नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी डॉक्टर के केबिन है और यहां पे एक मॉनिटर भी रखा गया है।

यह रूम व्हाइट कलर का है और यहां पर कुछ स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे ढेर सारे बल्ब लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में पंजाब नेशनल बैंक का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जिनमें व्हाइट कलर के पर्दे लगाए हुए हैं और कुछ टेबल भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे में ग्रीन कलर का मैट बिछाया हुआ है।

फ्लैट सर्फेस दिखाई दे रहा है जिसमें स्क्वायर शेप के ढेर सारी ईटे दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर के हैं।